बग़ीचे लगे हुए है फूल और पेड़ के पौधे लगे हुए है।

और रोड पर ऑटो और बाईक चलते हुए जा रही हैं।

इस चित्र में बहोत बड़ा सा रेस्टोरेंट है। इसमें बड़ी बड़ी टेबल चेयर्स लगी हुई है। बहोत बड़ा--

बाइक्स खड़ी हुई है और एक गार्ड चेअर पर बैठा हुआ हैं।

इस चेयर पे बैठके कुछ खा रहे हैं।

और वर्कर भी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

अ नीचे के बहुत सारे पब्लिकस् बैठी है कैमरा मैन --

और घड़ी लगी हुई है दीवार पर और इस तरफ भी बहोत सारे लोग आए हुए हैं पोस्ट ऑफिस से--

और छोटी सी गैस दिखारी दे रही है गैस चूल्हा--

इस चित्र में बहोत बड़ी सी गार्डन है।

और दूर दूर में कुछ इंसान है इसमें पैदल चलते हुए आ रहे हैं जा रहे हैं।

और बहोत सारे बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं मंदिर की छओर तरफ।

स्विमिंग पूल के किनारे छोटे- छोटे --

दे रहे हैं एक डब्बा से पानी दे रहे इन पौधों को।

ये फोटो में एक बहोत बड़े कपड़े की शॉप है जिसमें बहोत सारे कपड़े--

रखे गए हैं और डमी में पहनाए गए हैं ब्लेजरों को।